जो एक सरकारी संस्था की है बहुत खूबसूरत सा मकान है पीछे बहुत बड़े-बड़े बहुत सारे पेड़ हैं आगे की तरफ घांस लगी हुई है।

ये एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

जहां पर यह सारे पुतलो पर जेंट्स के कपड़े लगाए गए हैं।

बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य है|

ये सारी लड़के लड़कियों ने स्टेज परफॉरमेंस दिया था अपना सबने अ ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर परफॉरमेंस दी थी।

अंदर में अंदर की दीवार में एक फोटो लगी हुई है फैमिली पिक्चर की।

इस तस्वीर में टोटो दिखाई दे रहा हैं।

थोड़ा बोहोत है। उसके ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है ।

जो मछलियां बेच रहा है नीचे जमीन पे पॉलिथीन बिछा पन्नियाँ बिछाकर --

इसके गलियारे हैं सारे कमरे हैं।

एक औरत दिखाई दे रही है जो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाती दिखाई दे रही है। उन --

दर्द की क्रीम वगैरह सारे रखे हुए हैं अलग-अलग कंपनीस के।

अ ये स्पोर्ट्स अ दुकान की स्पोर्ट्स शॉप दिखाई दे रही है।

अ इस तस्वीर में सामने की तरफ एक बहोत बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है। बोहोत बड़ी-सी एरिया में।

इस मॉल में बहुत सारे ट्यूबलाइट्स हैं बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं।